नया खरीदता है सवारियाँ। सवारियाँ ले जाने ले जाने के लिए।

ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर पहाड़ों पर बना हुआ है।

के लिए मंदिर बने हुए हैं मां काली के मूर्ति दिखाई दे रही है और कई देवी-देवताओं के मूर्ति दिखाई दे रही है।

ऐसा प्रतीत होता है बच्चे यहां किताबों की दुकान है जहां बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं।

जो दुकानदार है वो भी दिखाई दे रहे हैं। बराबर में एक दुकानदार और बैठे हुए हैं जो ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह भी इनका कार्य बहुत सुंदर होता है जिससे आने वाले करियर में बच्चों के लिए बहुत लाभदायक और पढ़ने वालों के लिए --